उसकी चाची दिख रही है।

और कुछ आदमी खड़े हुए हैं गाड़ी जा रही है। डोरी लटक रही हैं पानी भर रहा है।

एक आदमी फूल बेच रहा है एक औरत बैठी है।

कुछ तार के गट्टे पड़े हुए हैं और यहाँ पर --

उधर एक पोस्टर लगा है। जिसमें ऊपर साउथ में लिखा हुआ है। एक उधर कुर्सी धरी हुई है।

बोहत बड़ी नदी बन रही है और ऊपर चद्दर भी चढ़ रही है।

डॉक्टर खड़ा हुआ है।

खिड़की दिख रही है।

यहाँ कच्ची सड़क है और बड़ा गेट लग रहा है।